यह एक घर है घर में एक बेड लगी हुई है।

पानी के बगल में कुछ बड़े- बड़े और कुछ छोटे- छोटे चट्टान दिखाया गया है कुछ सूखा हुआ पेड़ को भी दिखाया गया--

इस फोटो मे कुछ गाड़ियों को दिखाया गया हैं एक ऑटो रिक्शा है तो एक कार हैं।

इसके आसपास में बहुत सारे रेक बनी हुई है रेक में बहुत अलग अलग टाइप का किताबें रखी हुई है।

एक पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर में लिखा हुआ है डिपार्मेंट आफ पोस्ट ।

इस फोटो में दो ऑटो रिक्शा दिखाया गया है और उसी के बगल में एक मटेरियल ले जाने वाला गाड़ी को दिखाया गया है।

ऑटो रिक्शा के जस्ट बगल में एक टंकी रखी हुई है।

लाइटिंग बहुत ही अच्छे से की गयी है शीशा का यूज़ किया गया है चारों साइड में।

उसके जस्ट सामने बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन में कुछ सामान रखा गया है।

इस आंगन के चारों ओर बहोत बड़ी बड़ी घर है।

उसके जस्ट बगल मे और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान है इस दुकान में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है।

बेड के नीचे बहुत बड़े बड़े डब्बे रखे गए हैं मछली का बेड के ऊपर दो से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस फोटो में दो व्यक्ति को दिखाया गया है।